एक कैरेट में पूरी फुल मछली है और दूसरी कैरेट में थोड़ी है कैरेट का कलर येल्लो है उसके पास एक डलिया है और तीन आदमी खड़े है पीछे तालाब है।

एक मछली की दुकान है जो कि बहोत सारी इसके अंदर मछली रखी हुई है।

एक अंकल खड़े है ऊपर पंखा लगा है पर्दा डला है सामने कांच है दीवाल ग्रीन कलर की पुती हुई है और टेबल रखी हुई है।